है इसके चारों तरफ बिल्डिंगे बनी हुई है और पेड़ पौधे हरे-भरे हरियाली है चारों तरफ इसमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है इसके किनारे पर कोई बैठा नहीं--

यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई घर मकान झोपड़ी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे है।

यहाँ पर ग्रंथालय दिखाई दे रहा है क्यूंकी रात का समय है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है।